बिल्डिंग के पीछे एक बड़ा नारियल का पेड़ दिख रहे है बिल्डिंग पर पीला कलर पुता हुआ है और लाल कलर से पट्टे बने हुए है एक व्यक्ति अंदर की ओर जा --